साथ ही स्तंभ काले हो चुके है।

सेना के पास होता है।

जियो फ़ोन का एक एडवरटाइसमेंट लगा हुआ दिख रहा है ।

दीवाल भी नजर आ रही है हमे कुछ अलमारी रखी हुई दिखाई दे रही हैं ।

साथ ही हमें कुछ सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं और हमें --

हमें कुछ पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे हैं सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा है।